अंदर कई सारे बैलूंस लगाए हैं जेलों येलो और वाइट रंग दे कुछ ब्राउन रंग दे--

टी_वी रखी हुई है फ़्रिज्जा रखी है प्रेसा रखी है।

कई सारे दरखत लगे हुए हैं।

वो जो बाहर डस्टबिन रखे हैं कई सारे पेड़ पौधे लगाए हैं फ्लॉवर्स लगाए हैं।

ट्रैक्टर दिखाई दे रहे है कई सारे इत्थे वे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है फो --